दुकान में बोहोत सारी तरह तरह की कलर की कॉपिया रखी हुई है। बुक्स रखी हुई है। पेन पेंसिल रबर वगेरा रखे हुए है। कलर रखे हुए हैं।

यहाँ पे बहोत बडा सा हॉल है।

नीचे हरे कलर का और लाल कलर का कारपेट बिछा हुआ है।

यहाँ पे दो बस खड़ी है।

सीरमेंतेड बाउंड्री बनी हुई है।

बहुत सारी लाइट्स लगी हुई है।

जहाँ टेबल रखे हैं और लाल कलर का सोफा रखा हुआ है।

चर्च में खिडकियाँ हैं बड़ा सा सामने एक गेट बना हुआ है।

इसमें बहुत सारी दवाइयाँ रखी हुई हैं।

यहाँ पे एक गार्डन का दृश्य दिखाया गया है।

केवल हरी कलर की कारपेट बिछी हुई है।

एच.दी.एफ.सी. बैंक के बाहर का दृश्य दिखाया गया है।

वी केयर योर फैब्रिक्स --

फाइल है पेपर्स --

वो आदमी देख रहे हैं जिन्होंने --

यहाँ पे स्टेशनरी की दुकान का दृश्य दिखाया गया है।